भारतीय डाक है जो वाइट कलर से इस--

और सबने टोपी लगाये हैं किसी की टोपी सफेद कलर की है किसी की हल्‍की ऑरेन्‍ज किसी की काली और--

पहना हैं एक ने गुलाबी सूट पहना हैं दो बड़े--

बहुत सारे बगुले है अधिकांस बगुले सफ़ेद कलर के है और कुछ बगुले सफ़ेद और काले कलर के है बाजू में एक--

ऊपर काला कलर का पाल डला हुआ है नीचे बहुत सारी मिट्टी है और आजू बाजू हरे भरे--

दिखरा है जिसमे वो है ब्राउन कलर के है आजू बाजू स्टील की ग्रिल लगी हुई है ।

ए बाजू मे एक छाता है जिसमे सफेद कलर नीला कलर है और लाल कलर के धब्बे है।

उसके पीछे डस्टबिन रखा है हरा कलर का ऊपर अ--

एक शर्ट काला पैंट सफ़ेद जूते पहना हैं बाजू मे एक लड़की हैं ।

लगे हुए हैं आसमान का कलर सफेद है बहोत कोहरा दिख रहा है।

कुछ सामान प्लास्टिक के बर्तन में है।